रात्रि का समय है। लाइट जल रहा है।

बगल में मोटरसाइकिल खड़ा है दूकान है।

कई तरह का कपड़ा है। अ कई कलर की है। ऊपर में बॉल रखा हुआ है।

श्री राजेश्वरी बुक विंग्स लिखा हुआ है।